अच्छा स्पेस है बाहर में और रोड के सामने में कपड़ा का दुकान है और बहुत अंदर भरा हुआ मॉल है बहुत अच्छा।

फल का दुकान है और एक लड़का सामने में दुकान में है। पैसा गिर रहा है और सामने में केला रखा हुआ है।

और फल वल भी है और बहुत अच्छा से फल को सजा के रखा हुआ है। सामने मे केला है।

पेड़ नजर आ रहा है और मीनार नजर आ रहा है मस्जिद का।

मॉल है और पूरा पैन्ट टंगा हुआ है हर तरह का और बहोत अच्छे से सजा हुआ है। प्लास्टीक का सामान है किनारे में --

एक औरत है पीले कलर का साड़ी पहन कर और बोहोत अच्छा बोहोत बड़ा है और मंदिर है बोहोत सारा --

और रोड भी बहोत अच्छा है और किनारे-किनारे से बहोत साफ सफाई है और पेड़ लगा हुआ है किनारे-किनारे से --

इसपे भी बोहोत अच्छा है और बोहोत खूबसूरत लग रहा है बस --

और बहोत अच्छा है एकदम रोड पर दुकान है और शर्ट उर्ट का भी लगता है और पैंट ऊंट का भी है।

एक औरत बच्चा लेकर खड़ी हैम और बड़ा सा है और सीढ़ी चढ़ने का सीढ़ी रेड कलर का हैम और --

बहोत बड़ा ऐसा घर है और ऊपर में कच्चा हैं। पलस्तर नहीं हुआ है। नीचे में पीला कलर का है।

फल का दुकान है और सारा फल सजा हुआ है और बोहोत अच्छा लग रहा है। सेब है केला है नींबू है।

और केला भी ऊपर में सब टंगा टंगा हुआ है और बहोत अच्छा लग रहा है और सजावट बहोत अच्छा लग रहा है बहोत अच्छा तरीका से।

और एक ठो सामने में पेड़ नज़र आ रहा है और और बहुत अच्छा रोड है चकला है बहुत ज्यादा।

जिम करने का है है और हर एक तरह का यहाँ पे जिम करने का है बहुत बड़ा सा रूम है और पूरा पंखा लगा हुआ है।